जहाँ पर कुछ आइस बनी हुई हैं यहाँ नीचे कुछ गमले रखे हुई हैं |

और नीचे कुछ रिक्शा चल रहे हैं और कुछ लड़कियाँ स्कूटी पे जा रही है |

मंदिर का शंकुर ऐसा हमे बना दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पूल पे कुछ लोग बैठे हुए --

जिसके ऊपर एक ब्रीज बना हुआ है।

पेड़ है लगे हुए हैं जो इस फोटो में हम देख सकते --

कुछ मूर्तियाँ यहाँ हमे दिखाई दे रही हैं ऊपर ब्लू लाइटिंग लगी हुई हैं।

लेडीज सामने बैठी हुई है और एक लेडीज पीछे की और बैठी हुई है। यहाँ एक टेलीफोन रखा हुआ है और यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ --

यहाँ हमे एक मेन गेट का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे ऊपर कुछ --